बगल में एक रोड है जिसमें एक आदमी बाइक लेके हैं प्लस में वहाँ --

खराब सड़क है बगल मे बहुत सारे दुकान हैं और बैंक मे कुछ आदमी है |